के अंदर लोहे के पाइप लगे हुए है जिनपर टेंट भी लगा सकते है और लाइट --

घर भी है पास में जिसमें तीन खिड़कियां हैं।

और बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं प्लास्टिक की छोटी अलग अलग कलर की।

इस फोटो में एक रिसेप्शन काउंटर है।

और दो ड्रम के पास एक औरत भी खड़ी है एक आदमी भी --

और दो दरवाजे हैं एक खिड़की है।

इस फोटो में बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके बीच में से झरना बेह रहा है पानी--

इस फोटो में कट्टों में बहोत सारा सामान खीरे हरा धनिया नींबू रखे हैं पन्नी के अंदर बंधे हुए।